किसी ने नीला कलर का तो किसी ने लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ है और सभी अपने अपने काम में हैं और यहाँ बड़ा टीवी भी है।

यह एक मंदिर है बहुत ही बड़ा मंदिर दिख रहा है काफी बड़ा है और खुले आसमान भी बहुत अच्छा दिख रहा है।

सभी लोग यहाँ पर दिख रहे है बाजार करने आये है फल खरीदने आये है काफी लोग यहाँ पे हलचल है।